यह एक कृषिबिज्ञान केंद्र है का लाल रंग का गेट बना हुआ है और आस पास हरी घास उगी हुई है।

यह एक जिम है। इसके अन्दर काले रंग की और पीले रंग की कुछ मशीने रखी हुई हैं।

यहा पर एक कुर्सी है और कुछ अंडे भी रखे हुए है।

यह एक कृषि विज्ञान केंद्र है।

और आगे चल के एक लम्बा रास्ता दिखाई दे रहा है।

और इसकी छत पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा लगा है।

कुछ पौधे लगाए हुएँ हैं। इसकी सीढ़ियां बहुत डिजाइनिंग तरीके से बनी हुई हैं।

खड़े हुए हैं सर्दियों के सवाय समय है। लोगों ने गरम कपड़े पहने हैं।

यह एक सुन्दर रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत सारी टेबल्स और उनके साथ सुन्दर आकर्षित बनी हुई --

ए और इसके चारों तरफ कुछ जालीदार ग्रील्स लगाई हुई है।